इसे देखने के लिए लोग बहुत भेरी-भेरी से आते है।

यह एक बहुत ही अच्छा घर है।

यह स्टेट बैंक बहुत ही आजकल लोगों के लिए --

यह स्टेज मे प्रोग्राम हो रहा है।

यह बहुत सुन्दर भी है।

इंडियन गवर्नमेंट का स्टेट बैंक ए_टी_एम है।